installing plugins in moodle पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में how in बारे में सीखेंगे: plugins और moodle में plugin कैसे संस्थापित करें
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूं: ubuntu linux os 1604
xampp 5630 से प्राप्त apache mariadb और php
moodle 33
firefox web browser और कार्यरत internet connection
आप अपनी पसंद के किसी भी web browser का उपयोग कर सकते हैं
हालांकि internet explorer से बचा जाना चाहिए क्योंकि यह कुछ प्रदर्शन असंगतियों का कारण बनता है
इस tutorial के शिक्षार्थियों की moodle website में कुछ courses और users होने चाहिए
यदि नहीं तो कृपया इस website पर प्रासंगिक moodle tutorials देखें
plugins क्या है
moodle में शिक्षकों के साथसाथ site एडमिस्ट्रेटर के लिए कई उपयोगी plugins हैं
ये plugins directory में उपलब्ध हैं
browser खोलें और type करें
पेज में purpose और plugin type के आधार पर filters हैं
यहां custom search के लिए एक search box भी है
शीर्ष दाईं ओर कुछ संख्याएं प्रदर्शित हैं नीचे दिया टेक्स्ट इंगित करता है कि वे क्या हैं
इस tutorial में हम सीखेंगे कि attendance plugin कैसे संस्थापित करें
search box में attendance type करें और search button पर click करें
हम देखते हैं कि इस कीवर्ड के कई plugins या तो उनके शीर्षक या विवरण में हैं
attendance plugin पर click करें
यह सत्यापित करने के लिए कि आपने उसी plugin पर clicked किया है जिसका मैंने उल्लेख किया है नए पेज पर शीर्षक की जाँच करें
इसे शीर्षक के रूप में activities colon attendance दर्शाना चाहिए
यह plugin शिक्षक को moodle में attendance log रखने की अनुमति देता है
किसी भी नए plugin को संस्थापित करने से पहले सुनिश्चित करें कि यह आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे moodle version के लिए उपलब्ध है
सत्यापित करने के लिए समर्थित versions को देखने के लिए versions link पर click करें
यह देखने के लिए नीचे scroll करें कि यह हमारे moodle 33 version के लिए उपलब्ध है
description link पर वापस जाएं
यह समझने के लिए विवरण पढ़ें कि क्या plugin आपके उद्देश्य को पूरा करता है
यह plugin और उपयोग के निर्देशों का उपयोग करने के लिए किसी और चीज का भी उल्लेख करता है यदि कोई हो
हम देख सकते हैं कि इसे कई websites पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके कई प्रशंसक हैं
यह प्रमाणित करता है कि plugin उपयोगी और उपयोग में आसान है
आप नीचे भी scroll करना चाह सकते हैं और वे प्रश्न देख सकते हैं जो अन्य लोगों ने इस plugin से संबंधित पूछे हैं
जब आप आश्वस्त हों कि आप plugin संस्थापित करना चाहते हैं तो versions link पर वापस जाएं
download button पर click करें
फ़ाइल को अपने local system पर सेव करें मैंने पहले ही इसे अपने system में सेव कर लिया है
एक नया टैब खोलें और अपनी moodle website पर site administrator के रूप में login करें
सुनिश्चित करें कि xampp service चल रही है
अब हम admin dashboard में हैं
बाईं ओर पर site administration पर click करें
अतः plugins टैब और फिर install plugins पर click करें
यहां plugin को संस्थापित करने के 2 तरीके हैंmoodle plugins directory और zip upload के माध्यम से
हम केवल दूसरी विधि को cover करेंगे
पहली विधि के लिए हमें moodle org पर एक account बनाना होगा इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं
zip package के आगे choose a file button पर click करें
यदि यह पहले से चयनित नहीं है तो बाईं ओर upload a file link पर click करें
browse button पर click करें और उस स्थान को browse करें जहाँ आपने plugin फ़ाइल को सेव किया है
उस zip फ़ाइल का चयन करें जिसे हमने पहले downloaded किया था
इसके बाद इस window में नीचे upload this file button पर click करें
नीचे install plugin from the zip file button पर click करें
आप इस पेज में एक error का सामना कर सकते हैं
error दर्शाती है validating mod _ attendance error
cancel link पर click करें
यह हमारे लिए इस directory पर write permission देने के लिए एक संकेतक है
control + alt + t कीज दबाकर terminal terminal खोलें
type करें sudo space chmod space 777 space slash opt slash lampp slash htdocs slash moodle slash mod slash
prompted होने पर administrative password प्रविष्ट करें और enter दबाएं
browser पर वापस जाएं और प्रक्रिया को दोहराएं
इस बार हमें सत्यापन सफलता का संदेश मिला continue button पर click करें
कृपया ध्यान दें कि यह अतिरिक्त कदम केवल तभी आवश्यक है जब आपको उपरोक्त error screen मिलती है
अब plugin moodle के इस version के लिए downloaded और मान्य है
आगे हमें plugins check शीर्षक के साथ एक पेज मिलेगा
यहाँ हरे रंग में status जानकारी पर ध्यान दें जो to be installed दर्शाती है
upgrade moodle database now button पर click करें
इस कदम में कुछ समय लग सकता है कृपया browser window को refresh या बंद न करें
जब आप सफलता संदेश देखते हैं तो continue button पर click करें
अब हम new settings पेज पर हैं
यदि आप उनमें से किसी को भी बदलना चाहते हैं तो यह देखने के लिए सभी settings देखते हैं मैं कोई बदलाव नहीं करना चाहती हूं
चेक करने के बाद पेज के नीचे save changes button पर click करें
आपको कुछ चेतावनी संदेश दिखाई दे सकते हैं जिन्हें आप इस समय अनदेखा कर सकते हैं
यह देखने के लिए कि क्या plugin सफलतापूर्वक संस्थापित है बाएं panel में site administration पर click करें
फिर plugins टैब और उसके बाद plugins overview पर click करें
यह आपको सभी plugins की सूची दिखाएगा
जिन्हें default रूप से संस्थापित किया गया था और जिन्हें आपने संस्थापित किया था
मेरी site पर यह दिखाता है कि ये कई plugins संस्थापित हैं
अतिरिक्त संस्थापित किए गए plugins को देखने के लिए table के ऊपर additional plugins link पर click करें
यहाँ settings पर जाने और इस पेज से plugin को असंस्थापित करने के लिए links हैं
teachers और administrators अब उनके courses के लिए attendance बना सकते हैं
बाएं panel में site administration पर फिर से click करें
फिर courses और manage courses and categories पर click करें
बाईं ओर course category में 1st year maths पर click करें
दाएं calculus course पर click करें
calculus course विवरण section पर नीचे scroll करें और calculus course को देखने के लिए view टैब पर click करें
शीर्ष दाईं ओर पर gear icon पर click करें और फिर turn editing on पर click करें
topics से पहले क्षेत्र के निचली दाईं ओर पर add an activity or resource पर click करें
attendance बनाने के लिए attendance गतिविधि पर double click करें
यहां दिखाए गए अनुसार name और विवरण दर्ज करें
grade section का विस्तार करें
यह dropdown उपस्थिति के लिए उपयोग किए जाने वाले grading के प्रकार को तय करता है
यदि आप course grade में योगदान करना चाहते हैं तो अधिकतम प्वाइंट निर्धारित करें
मैं grade को none चुनूंगी
अन्य विकल्पों को default होने दें
नीचे scroll करें और save and display button पर click करें
अब हम एक नए पेज पर हैं
status set बार पर click करें
यहां attendance के लिए 4 default स्थितियां हैं:
अपनी आवश्यकता के आधार पर आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं या अधिक जोड़ सकते हैं
यदि आप उन्हें कुछ और कहते हैं तो आप स्थिति नामों को भी संशोधित कर सकते हैं
मैं excused स्थिति को हटा दूंगी क्योंकि मैं अपनी कक्षा में इसका उपयोग नहीं करती
एक पुष्टिकरण संदेश box प्रदर्शित होता है continue box पर क्लिक करें
add add session टैब पर click करें
पहले सत्र की तिथि चुनें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं मैं इसे 4 जून 2019 रखूंगी
सत्र का प्रारंभ और समाप्ति समय चुनें
ध्यान दें कि समय fields 24घंटे की घड़ी का उपयोग करते हैं अतः दोपहर 3:15 से शाम 4:05 तक कक्षा 15:15 से 16:05 होनी चाहिए
सत्र के लिए संक्षिप्त description type करें
यदि आप विवरण field को खाली छोड़ते हैं तो default रूप से विवरण regular class session होगा
इसका विस्तार करने के लिए multiple sessions section पर click करें
यदि आपकी कक्षा नियमित अंतराल पर होती है तो आप एक ही समय में कई सत्र बना सकते हैं
repeat the session above as follows checkbox पर click करें
यदि आपकी कक्षा सप्ताह के कुछ दिनों में होती है तो सप्ताह के दिनों का चयन करें अपनी कक्षा के लिए मैं सोमवार का चयन करूँगी
अब repeat every ड्रॉप डाउन option चुनें यदि कक्षा हर हफ्ते होती है तो 1 चुनें
यदि कक्षा पहले सत्र की तारीख से 2 सप्ताह होती है तो 2 और इसी तरह चुनें
मैं इसे 1 रहने दूंगी
इसका मतलब है कि मेरी कक्षा हर सोमवार को दोपहर 3:15pm बजे 50 mins के लिए होती है
repeat until अंतिम सत्र की तारीख है
मैं इसे 30th march 2020 रखूंगी
अब इसके विस्तार के लिए student recording पर click करें
यदि आप चाहते हैं कि छात्र अपनी उपस्थिति दर्ज करें तो इस section में fields भरें
मैं इस section को छोड़ दूंगी
नीचे scroll करें और पेज के नीचे add button पर click करें
एक पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित होता है 43 sessions were successfully generated
यदि आप मेरी तारीखों के अलावा अन्य तारीखों का चयन करते हैं तो आप एक अलग संख्या में सत्र देख सकते हैं
प्रत्येक सत्र के आगे icons देखें
वे शिक्षक को attendance लेने देते हैं सत्र को संपादित या सत्र को डिलीट करते हैं
उस सप्ताह के take attendance icon पर click करें जिसमें आप attendanceलेना चाहते हैं
आप इस course में नामांकित सभी छात्रों की सूची देख सकते हैं और आप उनकी attendance को चिह्नित कर सकते हैं
p l और a वह स्थिति है जो हमने पहले settings में चुनी थी
सभी यूजर्स की उपस्थिति के लिए p के ठीक नीचे स्थित radio button को check करें और केवल a को अनुपस्थित चिह्नित करें
जब आपने उपस्थिति को चिह्नित कर लिया है तो पृष्ठ के निचले भाग में save attendance button पर click करें
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने in बारे में सीखा:
यहां आपके लिए एक नियतकार्य है:
projectes tac dept द्वारा बनाए plugin font family के लिए search करें
इसकी default settings के साथ plugin को संस्थापित करें
plugins overview section से सत्यापित करें कि plugin संस्थापित है
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएँ आयोजित करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपने समयबद्ध प्रश्न इस forum में post करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस mission पर अधिक जानकारी दिखाई गई link पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ